कुछ आर्टफिशल फूल और फ्लावर लगे हुए हैं बाहर कुर्सी पे एक गार्ड बैठा हुआ है इस गेट के बाहर लाइटस का अच्छा बंदोबस्त किया गया है।

तरफ एक बस स्टैन्ड नज़र आ रहा है जहाँ पर तीन चार बसें रखी हुई हैं। साइड पे दो तीन व्यक्ति खड़े हुए हैं। एक नीचे बोर्ड लगा हुआ है।

यहाँ सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने सफेद रंग का कुर्ता पहना हुआ है ये हाथ आगे की तरफ करके खड़ा है।

नीचे लाल रंग का कार्पेट बिछा हुआ है इसके चेहरे पर भी कुछ लाल और नीले रंग का लगा हुआ है।